रास्ता दिखाई दे रहा है आजु बाजु ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।

गाड़ी मे जा रहे हैँ और उन्हेने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हैँ ऑटो मे एक भैया खड़े है जिन्होंने गुलाबी कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी हैँ उसके घर दिख रहा।

रास्ते में गुलाभी कलर की टाइल्स लगी हुई है वह एक छोटा सा टपरा या घर दिखाई दे रहा है।

उंड नज़र आ रहा है बड़ा सा जिसमे एक चेयर लगी है उसमे कुछ ग्रे कलर का कलर लगा हुआ है सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो काला और गुलाबी कलर लगा दिखा रहा है।

हैंडल और आइना दिखाई दे आगे चलके बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है गुलाबी सफ़ेद और पिली कलर की ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है जिसमे काली मूर्ति बानी हुई है रास्ता भी है अंदर जाने के क्रॉस बना हुआ हे दुआ दुआ सा दिख रहा है ये एक झाड़ पेड़ भी नज़र आ रहा है ऊपर से आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बड़ी मशीन दिखाई दे रही है एक भैया खड़े है कैप लगाकर ब्लू कलर की चेयर लगी मशीन में कुछ सामान भी रखा हुआ है एक कॉपी पड़ी है नीली--